ये तस्वीर में एक नदी दिख रहा है।

सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है।

एक पेड़ भी दिख रहा है।